इस इमेज मे एक ब्लैक कलर का चैनल गेट दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ जगहों पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही है तो कुछ जगहों पर मिट्टी दिखाई दे रही है| यहाँ पर एक बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ भी लगे हुए नजर --

इमेज मे एक मस्जिद दिखाई दे रही है जहां पर मस्जिद की गुंबज ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ पर रेड और व्हाइट कलर के बलूनों से डेकोरेट किया गया है यहाँ कुछ फ्लॉवरस भी रखे हुए दिखाई दे रहे है और यहाँ पर एक लाइट भी जलती हुई नजर आ रही है।